और यहां पर एक ए_सी लगी हुई है।

इस पे बहोत सारी तार और एक लाइट लगी हुई है।

यहां पर एक आदमी हाथ में बास का डंडा लिए खड़ा है।

यह एक जूतों कि दुकान है।

और यहां पर एक ब्लैक कलर का डस्टबिन भी रखा है।

और यहां पर बहोत सारे लोहे के--

यहां पर बहुत सारी लाइटें भी लगी हैं।

यह एक बहुत बड़ी सी दुकान है।

यहां की मिट्टी ब्राउन कलर की है।

और देखने में बहुत अच्छी लग रही है।